यहाँ पे दो सड़क जा रही है क्योंकि ट्रेन की पटरी है जो आ भी रही है जा भी रही है। यहां पे स्टेशन भी है यहां पर बहुत सारी बेंच भी लगी हुई है।

जैसा की हम देख पा रहे हैं। एक नदी है नदी के आस पास हरे भरे पेड़ लगे पीछे की तरफ पहाड़ भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है एक नदी आस पास पेड़ लगे हैं हरे भरे और साइडों में दोनों तरफ के हरे भरे पेड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं |

हम ये देख पा रहे हैं यहाँ दूर तक फैली एक नदी है और ऊपर आसमान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है |

देख पा रहे हैं यहाँं पर एक सीढ़ी है जोकि नीचे की जो नदी बनाई गई है सीढ़ियां बनाई गई है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ कुछ मकान बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं आस पास और राइट और लेफ्ट मे ऊपर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं सुन्दर हैं आसमान भी --

यहाँ पर समसग के नाम से एक शोरूम बना हुआ है और उसके आस पास काफी सारे पुतले खड़े हैं डमीस हैं --